एक मोर है बहुत सुन्दर है मो राष्ट्रीय प्रतिक मोर है और --

बहुत सारा मछली है। हमलोग बोलते हैं उसको मछली कितना और देरी का है और पीला-पीला गमला में भी मछली है बहुत सारा और मछली बेचने वाला बैठा हुआ है।

एक लूँगी पहन के आया है और लाल ड्रेस मे मछली है और लाल कपड़ा मे मछली है|

ये शादी का समारोह है और शादी में बहोत सजा हुआ है तीन लड़के खड़ा है कोई जेकेट पहना है कोई हल्दिया कलर का जेकेट पहना है।

यहाँ पे बहुत सारा दुकान है कॉपी वॉपीज़ कॉपी कलम का और कॉपी बेचने वाला खड़ा है और बहुत सारा कॉपी है जो डिब्बा मे डिब्बा मे कॉपी सब रखा हुआ है|

वहाँ पे फूल का दुकान लगा हुआ है जो आदमी सब बैठा है फूल बेचने में और एक ठो आदमी के पास हाथ में फूल है दोनों हाथ में --

और इधर भी जंगल है। गाछ लगा हुआ है और बहुत सुन्दर है।

अब घर है एक ठो जो बहुत सुन्दर है घर बहुत अच्छा सजा हुआ है और सोफे है सोफे के बगल में लाल कपड़ा लगा हुआ है और बगल में फूल है जो देखने बहुत सुन्दर लगता है लगता है कोई शादी में लेके जायेगा इसको।